और यहां पर जाकर के आप जो है उस जगह की जानकारी ले सकते हैं।

क्लियर यहां पर लिखा हुआ है ये एंट्री गेट है और ये एक इंस्टिट्यूशन का जो है एंट्री गेट है।